कपड़े दिखाई दे रहे है काफी सारे कॉटन भी दिखाई दे रहे है।

कुर्सियां सफेद दिखाई दे रही है।

पराठों में काफी सारी मिर्ची भी है।

ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

स्विमिंग पूल में काफी सारा पानी दिखाई दे रहा है पानी एकदम साफ दिखाई दे रहा है।

सामने रोड दिखाई दे रही है।

बिल्डिंग में खिड़कियां दिखाई दे रही है।

लॉर्ड बुद्धा का चेहरा दिखाई दे रहा है।

सामने गणेश जी की मूर्ति भी दिखाई दे रही है।